एक सामने डोमिनोज है जिस डोमिनोस के बगल से एक बैंक ऑफ़ इंडिया है।

एक खेल का मैदान है जिस खेल के मैदान में घांस जमा हुआ है अगल सभी लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ कार पार्किंग के पार्किंग बना हुआ हैं जहां पे जहां कार खड़ी हुई है।

एक साइकल का दुकान मुझे साइकल की दुकान में सामने एक लड़का जो साइकल देख चढ़ रहा है और अगल-बगल खड़ी हुई है हर प्रकार की साइकल रखी है ऊपर लाइट लगा है पंखे लगे है।

एक सामने जो बड़ा सा टेंट लगा हुआ है अंदर काफी भीड़ भाड़ चल रही है काफी खड़े भी है।

पोल्ट्री फॉर्म है जिस पर बहुत बड़ा सा बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है।